ये फोटो हॉस्पिटल के फीमेल जेंडर वार्ड का फोटो है। इसमें एक बिस्तर लगा हुआ है और दो खिड़की भी है ब्लू कलर से फीमेल जेंडर वार्ड लिखा हुआ भी है ।